पौधे हैं और लाल कलर के पीले रंग के खम्बे हैं।

यह एक गेम है। इस गेम में कुछ पोस्टर बने हुए हैं और कुछ --

कुछ हरे रंग के पौधे हैं और --

कुछ पौधे हैं जो कि हरे रंग के हैं और यह मकान स्लेटे रंग का है और गाडी भी स्लेटे रंग --

यह एक नीले रंग का फवारा है। इस फवारे के आगे एक लड़का बैठा हुआ है और फवारे में से --

पौधे और पुरुष हैं जो कि बागवानी कर रहे हैं और हरे रंग के पौधे भी हैं।

कलर का है और कुछ रखी हैं जोकि नीले लाल हरे --

जो कि हरे रंग के हैं और बहोत ही सुंदर लग रहे हैं। एक पोस्टर भी लगा हुआ है जो कि सफ़ेद रंग का है।

यहाँ पे कुछ मंदिर बने हुए हैं और उसके आगे एक नदी है और नदी में दो नाव हैं।